अह जंगल सफारी की यहां पर तस्वीरें वाइल्डलाइफ है ये यहां पे बहोत सारे जानवर का तस स्टेच्यू बना हुआ है और लगी हुई है बहोत ही सुंदर लुक है यहां का और --

ये जहानाबाद का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो बाहर से लिया हुआ है फोटो है।

और बड़ी फील्ड है और इन्हे गाइड किया जा रहा है इन लोग का--